यहां पर एक डमी रखी हुई है जिसने लाल रंग का कुर्ता पहन रखा है।

यहां पर बहुत से बड़े बड़े पत्थर हैं कुछ पत्थर छोटे भी हैं सामने एक नदी है।